यहाँ दो लड़के जो है यहाँ डांस कर रहे है और मेज रखी हुई है उन पर बेलून है

बहुत सारे लोग यहां पर खाना खा रहे है ऊपर पंखा चल रहा है लाइटें लगी हुई है कांच का गेट है बगल में

यहां पे पानी चल रहा हैं जहां पे लोग नहा रहे है पान छै लोग हैं यहां पे |

बोर्ड के बगल मे एक पेड़ लगा है नीचे छोटे-छोटे पौधे हैं बगल मे उनके ईट और बहोत सारे मिट्टी पड़ी हुई है पत्थर है।

ऊपर तारे जा रही हैं बिजली की। चर्च के ऊपर क्रोस का साइन बना है ।